यहाँ पे दो तीन च लोग भी हैं और --

यहाँ पे एक डांस स्टेज बना हुआ है। एक लड़की डांस कर रही है|

नीचे मिट्टी भी है जमीन पे।

यह एक रोड है। इसके पीछे एक वाइट कलर का एक घर है बगल में गार्डन है।

आसमान नीला-नीला बोहुत सुंदर दिखो नीचे --